इस फोटो में एक बैड दिख रहा है जिस पर सफेद कलर की चादर और सफेद कलर के तकिए रखें है।

इस फोटो में सामने की ओर एक मकान दिखाइ दे रहा है जिस पर काफी सारे बोर्ड लगे हैं।

एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

कुछ बच्चों की साइकिलें भी रखी है।

इस फोटो में एक व्यक्ति मैदान में दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक हरे कलर का मकान दिख रहा है जिसकी रेलिंग पर कुछ फूल लटके हुए हैं।

यह फोटो किसी पेंट वाले की दुकान से लिया गया है।

इसके चारों टायर खोल रखे हैं।

यह सीमेंट की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक लंबी बड़ी साफ सड़क दिखाई दे रही है।

सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे इटों से बाउंड्री की गई है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा है जिस पे एच_पी पेट्रोल डीजल लिखा हुआ है।

यह फूल जैसे दिखाई दे रहे हैं।